मोबाइल और बाहर बहोत सारी गाड़ियां पार्किंग के लिए--

ये एक बहोत बड़ी पूजा है बहोत सारी औरतें साड़ी पहनी हुई है और--

बहोत सारी दुकाने सामने दिख रही है ऊपर भी रास्ता बना हुआ है लिफ्ट बनी हुई है।

ये एक बहोत ही बड़ा गोदाम है जिसमें बोरियां भर के रखी हुई है समान की और सामने एक क्रेट में बहोत सारे और टोकरी में आलू रखे हुए--

फूलदस्ता रखा हुआ है और बहोत अच्छी डेकोरेशन की गई हुई है।

ये एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है लाइटें लगी हुई हैं ऊपर जाने को सीढ़ियां हैं रिसेप्शन बनी हुई है रिसेप्शन पे बहुत सारा सामान है।

और यहां पे रखी हुई है पार्क करके।

बोर्ड दिख रहा है एक गेट छोटा खुला हुआ है।

बहुत सारी बोतलें बहुत सारा सामान यहां पे रखा हुआ हैं कैस्ट्रॉल रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटल्स है तांबे चांदी की भी बर्तन यहां पे रखे हुए हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में बहुत सारा सामान रखा हुआ है खाने का समान है पनीर है और रोटी भी रखी हुई है।